और फेन भी चल रहे हैं और यहाँ पे चेयर भी है टेबल भी है बहुत सारे लोग भी दिख रहे हैं एक ने ऑरेंज कलर टी-शर्ट पहना हुआ है।

यहां पे एक चाय सेंटर है जहां पे एक डस्टबिन भी रखा हुआ हैदो लोग उस चाय की दुकान पे खड़े हुए है।